बहोत सारे बाइक बाहर में बहोत पाइप है बहोत सारे डीजल विजेल बहोत सारे पेट्रोल है जिसे--

गाड़ी है जहाँ पे गाड़ी के को उठाके किया जा रहा है।

यह एक रूम हैजहां पर डेक्स के ऊपर में बहुत सारे--

ये एक स्कूल हैऔर के बाहर के आंग में बहुत सारे पीर पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे नारियल के पीर--

दुकान है जहां पे बहुत सारे बर्तन रखे गए हैं बहुत सारे चूड़ी गिलास रखे गए हैं बहुत सारे--

एक हॉस्पिटल के बाहर का कॉरीडोर है जहां पर बहुत सारे पेड़-पौधे हैं।

बहोत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हुएं हैं बहोत सारे बैठने के बहोत सारे बड़े बड़े पौधे--

बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं एक औरत है जो पकड़ के पानी दे रही है पौधों में।

बैंक के बाहर में बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं बहुत सारे बाइक बहुत सारी स्कूटी घरी एक आदमी चेयर पे बैठ के--

चमेली के फूल है बहुत सारे सूरज मुक्ति के फूल है बहुत सारे रंग बिरंग के फूल है बहुत सारे --

माला बना कर के बहुत सारे टोकरियों में फूल रखे गए हैं बहुत सारे फल फूल रखे गए हैं।

ये एक चर्च है जहां पर बहुत सारे ब्रांचेस लगे हुए हैं बहुत सारे ड्रम लगे एक आदमी जो ड्रम बाजार हैबहुत अच्छे से--

उसके बगल में कुर्सी रखी गई है और बॉल भी बहुत अच्छे से सजा गया है से डेकोरेट किया गया है।

बहुत सारे चप्पल के जैसे बहुत सारे नट बख बहुत सारे तार हैबहुत सारे पाई --

बहुत सारे प्लाजो टंगे हुए हैं बहुत सारे मोजी टंगे हुए हैं बहुत सारे कपड़े हैं यहां पे--

यह कारखाना जहां पर बहुत सारे लोहे के सामान पड़े हुए है बहुत दूर दूर में बै--

काम कर रहा है एक आदमी है नीचे बहुत सारे लकड़ी टुकड़े प एक आदमी है जो लकड़ी को सा--

कागज को टेकन करके उसका के उसको जला --

ये एक किचन स्टोरेज है जहां पे बहुत सारे डिजाइनर टिश्यूस बनें हुए लैंप बने हुए --

यह एक बहुत बड़ा सा गुफा है जिसके आसपास में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं पत्थर बहुत सारे पड़े एक आदमी हैंजो नीले कलर का पेंट और कोट पैंट के फोटो खींचवा रहा है ।

ये एक बहुत बड़ा सा गैरेज है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां रखी गई है बहुत सारे--

ये एक कैफे हैजिसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है बहुत सारे बियर के बोतल--

बहुत सारे डिम डिम लाइट्स लगी हुई है एक लाइन से बियर की बोतल को सजा के रखा गया बहुत सारे ग्लासेस से--

बहोत बड़ा सा हैएक लाइन से बहोत से लोग का बहोत सारी सीढ़ियाँ लगी हुई है बहोत सारी सीढ़ी बनी हुई है जिससे लोग आना जाना --

बहुत ज्यादा गंदा है वो बर्तन और वो लड़की हाथ अपना साफ कर रही है।

बहुत सारी सी_सी_टी_वी लगे हुए बहुत सारी लाइट लगी हुई हैपंखा लगा हुआ है कैमरा लगा हुआ है।

ये एक कैबिन है जिसमें कैबिन में बहुत सारी फोटो चिपकाई है।

बहुत सा कॉरिडोर है जिसपे बहुत सारे सीसेस आने लगे गए हैं बहुत सारे पत्ते बहुत सारे बॉलंस के डिज़ाइंस लगाए गए हैं।

ये एक हॉस्पिटल जिसका नाम है राज्य स्वास्थ एवं परिवार कल्याण संस्थान--

यहां पे बहुत सारे लोग हैं जो मास्क लगा के गेट के पास बहुत से लोग भीड़ लगाए हुए हैंबहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं लोग सब अंदर आना जाना करते है--

गेट बहोत बड़ा अच्छा हैकाकैमरा लगा हैबहोत सरे लइठे हैजो लगी हुई है बहोत सरे पेड़ पौधे भी है।

बहुत सारे सॉप्स रखी हुई है बहुत सारे अचार के डिब्बे रखे हुए हैं जेली है बहुत सारे बिस्कुट रखे हुए हैं डिब्बे में करके --

ये एक बहोत बड़ा सा हॉल है जिसमें बहोत सारी स्टील के समान रखी गई है बहोत सारे कॉर्नर बने हुए--

बहुत बड़े बिल्डिंग्स और आसपास में बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं एक लाइन से पेड़-पौधे--

ये एक सेंटर है जिसका नाम है ओटोमा इंस्टिट्यूट ऑफ आई_टी एंड ट्यूशन सेंटर जिससेटर गिरे हुए हैं।

एक दुकान है जिसका नाम है सी_ए_टी शॉप्स सीएट शॉप --

ये एक दुकान है एक बड़ा सा पोस्टल लगा हुआ है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग --

लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेफ्ट साइड प्लेसमेंट सी _ऊ --

जिसका नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बैच विल स्टार्ट फ्रॉम मिडल ऑफ फरवरी दो हजार अठारा--

साइज बनाई जाती की जाती है एलुमिनियम के सामान बनाए जाते है बहोत सारे लोहे के पार्ट्स रखे हुए हैएक आदमी लोगो को गाइड कर रहा हैएक आदमी उसको --

बहुत से लोग हैं पार्क है बहुत बड़ा सा पानी वाटर पार्क है--

बहुत सारे स्लाइड करने वाले हैं बहुत सारे लोग आदमी दो-तीन आदमी लोग खड़े है ।